यह एक स्विमिंग पूल का है। यह स्विमिंग पूल देखने में बोहोत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है। यह स्विमिंग पूल में बोहोत ही आदमी --

यह एक डैम का फ़ोटो --

और यह बैंक बोहोत ही अच्छा है। यह बैंक में बोहोत ही सुरक्षा के साथ पैसा उठाया जाता पैसा जमा किया जाता है। यह बैंक कि --

आम और भी चीजें रखी गई हैं। यहाँ पर बहोत ही आदमी अ सब फल को लेने के लिए आते हैं और बहोत ही स्व फ्रेश फल मिलते हैं।

आते हैं बहुत दूर-दूर से --